व्यक्ति कुछ फूल लगा रहा है हरे भरे पेड़ आसपास लगे हैं।

इस क्षेत्र में दर्बन ग्रीन्स नर्सरी दिखाई दे रही है।

अंदर की तरफ मूर्ति रखी है बाहर गेट खुला नजर आ रहा है।

धर हमे एक कॉलोनी दिखाई दे रही है।

एक लोडिंग ऑटो खड़ा हुआ है।

इस क्षेत्र में एक गुरु द्वारा दिखाई--

आस-पास छोटे-छोटे घर भी हैं।

इस चित्र में एक आइसक्रीम की शॉप दिख रही है टॉप एंड टाऊन ।

इस क्षेत्र में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

आस-पास पेड़ नजर आ रहे हैं।

अंदर एक गाय का बच्चा खड़ा हुआ है।

गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में चित्रांश नरसरी --

एक सिग्नेचर रिएल्टी दिखा दिखाई दे रहा है।

साइड में गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

फूलों से अअ सजा हुआ है सामने कुर्सी टेबल रखे हैं बाहर लैंब भी लगा हुआ है।

पीछे अंदर भी टेबल कुर्सी रखे हैं।

बहुत सुंदर बेकरी बनी हुई है।

अंदर सारा सामान रखा दिखाई दे रहा है।

कैमरामैन भी खड़ा हुआ है उस तरफ गार्ड भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

आटे के बोरे और बिस्कुट लहसुन अदरक--

पीछे भी काम चलता नजर आ रहा है।

हरे भरे पेड़ बहोत सुंदर लग रहे हैं।